ये एक दो मंजिला येलो कलर का मकान है इसके राइट साइड में नीचे पाइप लगा हुआ है उसके सामने एक केबल जा रही है। इसके अंदर कु --

इस इमेज में एक दो मंज़िला घर दिख रहा है जिसके उ- जिसके ऊपर ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लिखा हुआ हे ।

इसके ब्लू कलर की गेट है और इसके ऊपर छो जंगले लगे हुए हैं इसके राइट साइड में एक बिजली का तार जा रहा है।

इस इमेज में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वाइट कलर की गुंबज थे और पीले कलर के सामने इसका छज्जा बना हुआ है इसकी राइट साइड में पेड़ लगे है इसके लेफ्ट साइड में पेड़ है इसके ऊपर पिंक कलर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जा रही है।